समुंद्र मे एक बोट दिख रही है।

टेबल कुर्सियां रखी हैं उस पर प्लेट रखी हैं कुछ लोग खडे हुए--